यहां एक बस खड़ी हुई है जो सफेद और लाल रंग की दिखाई दे रही है। ऊपर से पीले रंग की धारी बन रही है। बगल में एक और बस आती सी दिखाई दे रही है। नीचे जमीन पर कूड़ा पड़ा हुआ है। मिट्टी की सड़क है।

पीछे सड़क जा रही है। आजू-बाजू बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है। बगल में एक बाइक दिखाई दे रही है। पीछे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक पुल बना हुआ है। पुल के कोने में रेलिंग लगी हुई है जो काफी लंबी है।

पेड़ों से बहुत हरियाली दिखाई दे रही है। बस रंग बिरंगे रंगों की बनी हुई है। यहाँ कोई लोग आ रहे हैं। कुछ इंतजार कर रहे हैं। कुछ बस में बैठ के जा रहे हैं।

नीचे एक खंभा भी बना हुआ है। जिसमें एक --

यहाँ एक बड़ा हवाई जहाज दिखाई दे रहा है जो कि सफेद व नीले रंग का है। जिसमे हल्के नीले रंग की धारी भी बनी हुई है।

यह एक दिखाई दे रही है जिससे हम बाहर का नजारा देख सकते हैं नजारा बहोत ही सुंदर है। क्यूंकि --

एक और घर बना हुआ है। जिसमे रेलिंग भी लगी हुई है। ऊपर हरे रंग का कलर हो रहा है। बगल से पेड़ भी --

बगल में किनारे पर बहुत सी मिट्टी और छोटे-छोटे कंकड़ पड़े हुए है। पुल पर एक ट्रक जा रहा है।

यह एक सड़क है जहां दूसरी तरफ बहुत सी दुकाने हैं और बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं जिनसे बहुत छाँव और हरियाली आ रही है।